हेलो दोस्तों तो यहाँ पे एक बेड हैं बेड पर दो बैग रखें हैं।

और पीछे आसमान है नीला दिख रहा है एक खंबा है।

दोस्तों तो यहां पर एक पिक्चर दिख रही है इस पिक्चर में एक मंदिर दिख रहा है जो लकड़ी का बना है सामने ही कुछ गाड़ियां दिख रही--

साइड में बड़े-बड़े गिटार लटकाये हैं। एक ढोलक दिख रही है। नीचे स्टूल है जो की बैठने के लिए है। फर्श दिख रहा है।

यहां पर एक शॉप्स है यहां पर चेयर्स लगी हैं चेयर ब्लैक रंग की है।

उपर फर्श है जो की ग्रीन कलर का है। खंभे लगे हैं जो की लाल रंग के हैं।

ऊपर के सामने घड़ी लगी है पीछे एक पेड़ है जो हरे रंग का है ऊपर नीला आसमान है आसमान में सफेद सफेद बदल दिख रहे हैं।

यहाँ पर एक ट्यूसन कि क्लास है जहाँ पर बहोत सारे बच्चे बैठे हुए हैं और पढ़ रहे हैं सामने एक मैम हैं।

बेल्ट पेहनी है और पैंट भी ब्लैक रंग की है पीछे ब्लैक बोर्ड्स भी दिख रहे हैं।

चिल्ली पोटैटो बना रहा है जिसका चेहरा ब्लर दिखाई दे रहा है हाथ में उसने मशीन पकड़ी हुई है।

यह एक सुंदर व्हियू है। यहां पर कुछ बिल्डिंग दिखाई दे रही है इसके साथ साथ में कुछ पेड़ है हरे भरे हैं।

और यहां पर बैनर्स में कुछ ऐैसी तस्वीरें लगाई गयी हैं की मुंह में पानी आने लगा है इतने अच्छे अच्छे पकवान है की क्या कहें भाई।

और इन्होंने सिर पर अपने सिर पर तसले उठाए हुए हैं जिसमें की बजरी भरी हुई है।

यहां पर एक मिशन दिखाई दे रहा है जिसमें सब कुछ सफेद ही सफेद दिखाई दे रहा जैसे ब्लैक एंड वाइट की तरह जैसे पुरानी फिल्मों में होता था।